चर्च के अंदर कुछ प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पे बहुत सारे आदमी है।

भी है और लेडीज भी है और एक चर्च सजा हुआ है यहाँ पे मतलब सब पे बैठ के फोटो खिचा रहे हैं।

यहाँ पे घर बन रहे है यहाँ पे घर बन रहे है और यहाँ पे हम देख रहे हैं।

वेडिंग के हिसाब से यहां पे डेकोरेट किया हुआ है फुल वगैर पत्ता वगैर भी किया हुआ हैं यहां पे--

यह एक यहाँ पे एक पेड़ है जो तो उस साइड से गया हुआ है।

ये एक दुकान है जहां पे हम देख रहे हैं कि यहाँ दूध का ऊपर में--

ये एक मंदिर है इन मंदिर के बाहर का नजारा है यहां पे हम देख रहे हैं।

यहाँ पे हम देख रहे हैं मतलब सोफा वाला--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

यहाँ पे और उस में मैं पूरा मतलब पूरा मतलब बहुत पुराने किले हैं।

नीचे में एक सब्जी वाला बैठा हुआ है जो कि को बंधा गोभी लेके बैठा हुआ है और उसके पास भी एक प्लास्टिक है।

यह एक शॉप है यहाँ पे हम देख रहे हैं।

बीपी नापने का भी है और यहाँ मतलब भी है टैबलेट --

और ठेला भी है ठेला के ऊपर प्लास्टिक से कवर किया हुआ है।

यहाँ में फूल से सजा हुआ है यहाँ पे डेस्क वगैरह में --

ये एक शॉप है ये एक सा कपड़ा का शॉप है यहाँ पे हमें दिख रहे है दो महिला है एक लड़का है और ए --

मतलब एजेड अंकल लोग हैं और यहाँ पे एक लड़की का रिवार्ड मिल रहा है और यहाँ बहुत सारे रिवार्ड और भी रखा हुआ हैं।

भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर त्रिशूल बना हुआ उसके नीचे सांप का शेप बना हुआ--

उसके बगल में बहुत बड़ा नदी है वहाँ पे एक आदमी है एक लड़का है।

कपड़ा मिलता है हम देख रहे कुछ कपड़ा टंगा हुआ भी है।

ये जो होटल का रसोई घर है निहां पे खाना बन रहा है लड़का लोग है और महिला है और आदमी लोग --

यह एक सीढ़ी है यह एक मंदिर है मंदिर में झालर लगा हुआ है।

यह एक रोड है यह एक हाईवे का रोड है हम देख रहे हैं।

सब आदमी औरत बच्चे सब बैठे हुए हैं और कुछ खड़े हैं और छोटा छोटा कम में डिजाइन किया हुआ है वहां पे--

यह एक लड़ यह एक दुकान है दुकान में ही एक लड़का है।

यहाँ पे गाड़ी दिख रही है और कुछ आदमी दिख रहे हैं और एकदम साफ सुथरे--

बांसुरी स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे लाइट भी लगी हुई है।

यह ग्राउंड है ग्राउंड में हम देख रहे हैं बहुत सारे रूम बने हुए हैं।

और यहाँ काट रहे हैं और यहां पर बड़ा बड़ा पेड़ वगैरा हैं घर भी हैं ।

यहाँ पे यह रोड है यहाँ पे बाहर बहुत अच्छे से लाइटिंग की हुई है सजाई हुई अंदर में--

मुझे व्यक्ति भी दिख रहे हैं कुछ बैठे हैं कुछ खड़े कुछ कुर्सी भी दिख रही है खाली।

किया हुआ है और यहाँ पे एक छत्ता पे कपड़ा कपड़ा भी सूख रहा है।

यहां पे हमारे ट्रेक्टर के अंदर देख रहे है बोहोत बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ हैं।

बगल में एकदम लंबा सारा ब्रिज है इसमें एक ही पत्ता नहीं है और जस्ट उसी के अपोजिट में कांच है जैसे बहुत सारा पत्ता हरा भरा--

और एक डायरी में कागज और एक सुन रहे--

ये एक सा ये यहाँ पे हम देख रहे है एक बाउल में चाट है छोटा सा दोना में चाट रखा हुआ है।

एक शॉप है शॉप के जस्ट शॉप के अंदर में हमें कवर दिख रहे हैं।

यहाँ पे पेप्सी है उ फ्रिज है फिर जाली है शैंपू वगैरह है।

और वो सा सामान जैसे सरप है टूथपेस्ट वगैरह सब है यहाँ पे फेस वॉश भी है महिला पुरुष का।

यह एक फैमिली रेस्टोरन है हम जहाँ पे देख रहे हैं फैमिली रेस्टोरन ढाबा है।